फोटोज़ में आप देख सकते है की यहा पे खिड़कीयो में भि वाइट कलर दिख रहा है एंड ऊपर की तरफ लाइट लगी है जोकि वाइट कलर में आपको दिखाई रही--

और पेड़ भी दिखाई दे रहा है और ये बस जो है खड़ी हुई है एक रोड पे और इधर भी तीन बस ख-तिन चार बस आपको दिखाई दे रही और ये सामने बस जो तीन बस के सामने दुकान भी है।

यह देख ने का जगह है इसमें पीछे की तरफ पड़े है और यह देखिए येलो कलर की बनी हुई है पूरी जिसमें आगे कितना --

यह देखए इंडियन ऑइल है यहाँ पे आप देख सकते है की पेड़ पोधे भि दिखाई दे रहे होंगे ग्रीनेस भि यहाँ पे दिखाई दे रही है।

यहा पे हम को इंडियनऑयल है यहाँ पे देखिये आपको इंडियनऑयल पे यहाँ पे एक बोलरो खड़ी है--